इस चित्र में बहुत बड़ा सा गार्डन है जिसमें बहुत सारे--

इस चित्र में बहोत बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा और पूरे मंदिर के बाहर सब कोई एक नल के पास पैर हाथ धो रहे हैं।

और लाल कलर की गेट के बाजू में एक छोटा सा काला कलर की भी गेट है बगल में बाउंड्री है बाउंड्री के नीचे छोटे-छोटे पौधे लगे हुए है।

और अंदर कबर्ड में बहोत सारे समान रखें गए है।

हर बड़े बड़े पेड़ भी लगे हैं चारों तरफ।

इस चित्र में एक बहुत बड़ा सा--

इस चित्र के अंदर एक बहोत बड़ा हॉल है हॉल पर एक बहोत बड़े से--

एक लड़की खड़ी है दुकान के अंदर--

और एक बड़ी सी टेबल रखी गई है और चेयर लगाए गए प्लास्टिक के चार पांच छे चेयर लगी है।

और पूरी व्हाईट कलर से पेंट की गई है दीवाल को।

और बहोत सारे बड़े बड़े माला बनी है गेंदा के मोगरा के--

बैठकर और बहोत लोगों की भीड़ हुई हैं।

ये झरने की पानी नीचे नदी की ओर बहते हुए जा रही है।

एक छोटा सा घर है और पहाड़ में भी एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे अनेक प्रकार के सामान रखे गए हैं।